और रोड पे एक बाइक पे एक आदमी जा रहा है।

यह पेट्रोल पंप का फोटो है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

जो की पूरी बाइक काले रंग की है।

एक टेबल पे बहुत सारा प्लेट रखा हुआ है।

इस फोटो में लाइटें जल रही हैं एक दीवार पंखा है एक नीचे का पंखा लगा हुआ है।